बॉडी बिल्डर का फोटो भी बना हुआ है। बोहोत सारी मशीने जिम में रखी हुई है।

घर के बाहर का दरवाजा बोहोत बड़ा सा बना हुआ है। दरवाजा महरून स्टील --

नजर आ रहा है मैंदान का बादल बहुत ही साफ़ सुथरा से दिख रहा है।

बच्चे ने एक कोट पहन कर बैठा हुआ है आपके सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है बच्चा बहौत ही --

इसके सामने एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। पेड़ भी निकले हुए हैं। रोड पर पीछे तरफ एक लड़का भी नजर आ रहा है चलता हुआ।

एक घर है। घर इनकंप्लीट सा है। घर बनता हुआ नजर आ रहा है।

इक दुकान है दुकान में ए बहोत सारा समान रखा हुआ है समान डेली यूज़ का सारा समान रखा हुआ है।

घर के बाहर बहोत सारी बाइक खड़ी हुई हैं। दो चार लड़के भी बाइक के पास खड़े हुए --

एक मछली बाजार है। मछली बाजार में बहोत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं जमीन पर। जमीन पर ब्लू कलर --

एक गुफा है। गुफा काफी डरावनी सी नजर आ रही है।

वॉल के साइड में एक टेबल पर एक मिट्टी से सीनरी बनाई गई है। सिनरी में बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

अ हॉल सरकारी हाल दिख रहा है। हाल के साइड में एक --

एक बड़ी-सी टेबल पे रखी हुई है। एक आदमी टेबल पर कुछ रखते हुए नजर आ रहे हैं। हॉल में दीवार --

एक बहोत बड़ा सा बुक सेल्स का शॉप है। बहोत बड़ा सा व्होल सेल्स का --

झील के साइड साइड में छोटे-छोटे पत्थर बने हुए हैं। पत्थर बहोत ही पुराने दिख रहे हैं। काले-काले से पत्थर पड़े हुए हैं।

आसमान बहुत ही साफ सफेद सा दिख रहा है। पहाड़ बहुत ऊंचा ऊंचा बना हुआ है।